यह रेस्टोरेंट बहुत ही सुंदर है यहाँ हमें बाहर कुछ टेबल चेयर नज़र आ रही है।

यहां हमें दीवार की एक खिड़की पर छोटे गमले दिखाई दे रहे हैं।

इस चित्र में हमें लाल तथा सफेद फूल नजर आ रहे हैं।

यहां पर हरी घास तथा छोटे हरे पौधे है।

तथा हरे भरे वृक्ष नजर आ रहे हैं एक रोड दिखाई दे रहा हैं।

इस सड़क पर हमें एक सफेद फोर व्हीलर दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में हमें एक भवन नजर आ रहा है।

इस चित्र में हमें एक पहाड़ी इलाका दिखाई दे रहा है सूरज चमकते हुए नजर आ रहा है।

इस चित्र में हमें एक दुकान का दृश्य नजर आ रहा है।

पास मैं एक हरा खेत दिखाई दे रहा हैं।

यहां पर हमें कुछ व्यक्ति पहाड़ी पर चढ़ते हुए दिखाई दे रहे है।

यहाँ पर हमें सुंदर सूरज दिखाई दे रहा है।

वाडीलाल अइसक्रीम की दुकान है। दुकान को गुब्बारों से सजाया हुआ है।

इस चित्र में हमें एक जीत ऑटो गैरेज एंड सर्विस सेंटर दिखाई दे रहा है।

इस सर्विस सेंटर में बहोत सी कारें दिख रही है।

कुछ पत्थर दिखाई दे रहे हैं। दृश्य बहुत ही सुंदर है।

कुछ व्यक्ति एक्सरसाइज कर रहे हैं यहां पर एक्सरसाइज के कुछ उपकरण रखे हुए हैं।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

एक व्यक्ति लाल कलर की टी शर्ट पहने पत्थर पर खड़ा है।

यहां पर एक व्यक्ति बाहर रखी टेबल पर सोया हुआ है।

इस इमारत का सफेद गुंबद बहोत ही सुंदर है।